ये एक दीवार पर बना और कुछ लोग जुड़े वाईट कलर की दीवार पर ऊपर एक हाइलोजन बल्ब जला हुआ है।

पहाड़ के पास बहोत सारे लोग खड़े हैं एक आसमानी शर्ट में लड़का सेल्फी ले रहा है।

स्कूल के फंक्शन में कुछ स्टूडेंट प्रोग्राम करते --

मे नीली टी शर्ट में एक लड़का गले मे एक लाल धागा पहेने हुए और एक ब्लूटूथ लटकाए --

टेंट लगा जिसमे महात्मा बुद्ध एक मूर्ति टेंट के एक छोर पर एक बैनर कुछ आदमी कुर्सी पर बैठे --

एक मीटिंग हो रही सफ़ेद कलर का टेंट है।